और बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं इस इस जानवरों को कैद करके रखा गया है पिंजड़ों में।

रेस्टोरेंट को काफी अच्छी तरीके से सजाया भी गया है।

आस पास जंगल झाड़ी दिखाई दे रही है।

ग्रीन और व्हाइट बैलून भी सजाया गया--

समान रखने वाला ब्रेंच भी रूम के अंदर अवेलेबल है।

ये एक मंदिर का फोटो है जिसमें बजरंगबली का बना हुआ है मंदिर।